व्यक्ति बैठे हुए चेयर पर एक बंदा छत के ऊपर है यहां पर हरे कलर का पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे पौधे पेड़ पौधे है बहुत सारे पेड़ पौधे--

पेंट टंकी भी दिखाई दे रहा है यहां पर झालर लगा हुआ है पानी की बोतल दिखाई दे रही है कंप्यूटर दिखाई दे रही है चीज भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पे एक दरवाजा है यहां पे दो व्यक्ति वहाॅं पे अंदर हैं।

खड़े हुए हैं यहां पर पौधे वोदे लगे हुए हैं फुल के यहां पर--

यहां पर एक हरे कलर का घट--

यहां पर बहुत बड़ा पार्क दिखाई दे रहा है इस पे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ हुआ है इंग्लिश में बहोत सारे लाइटें वगैरह लगे हुए हैं।

अ लाइटे लगे हुए हैं यहां पे पोस्टर पे कुछ लिखा हुआ है यहां पे कैमरे भी लगे--

यहां पर एक बंद खड़ा हुआ है दुकान पे बहोत बड़ा दुकान है मछली का दुकान है यहां पर मछली मिलता है बड़ा छोटा--

यहां पे एक पीला दिखाई दे रहा है यहां पर चार ओर से--

यहां पर ये कांच का दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारे पौधे लगे हुए पेड़ पौधे लगे हुए हैं फूलों के पौधे लगे हुए पत्ते लगे हुए हैं यहां पर--